रूम का कलर व्हाइट कलर का है।

रूम का टाइल्स सफेद और काला मिक्स है।

इस छवि में एक रास्ता दिखाया जा रहा है।

बगल में कुछ लोग खड़े हुए हैं।

इस छवि पे एक बिल्डिंग बनते हुए देखा जा रहा है।

बिल्डिंग के बाहर में फूल से कुछ डेकोरेट किया गया है।

कांच के ऊपर में एक टी_वी लगा हुआ है और उसके पास में कुछ फोटो लगा हुआ है।

बगल में एक ठो छोटा टेबल रखा हुआ है।

बिल्डिंग के बगल में कुछ पेड़ लगे हुए हैं।

इस छवि में कुछ मछली रखा हुआ है।

कुछ लाइट लगे हुए हैं।

और मंदिर के बाहर में एक झंडा भी लगाया हुआ है।

बिल्डिंग के बगल में कुछ गाड़ी चल रहे हैं।

रूम पे टी_वी घड़ी है।

बिल्डिंग के बगल में एक लोग खड़ा हुआ है।

और बिल्डिंग के नीचे एक काला गाड़ी रखा हुआ है।

और घर के बगल में कुछ पेड़ लगे हुए हैं।

और बिल्डिंग में चार ठो गेट है।

और बाल में नीला कलर का क्लिप लगाया हुआ है।

इस छवि में कुछ हिरन दिखाई दे रहे हैं।

और नदी के किनारे कुछ पेड़ लगे हुए हैं।

इस छवि पे घर जैसा कुछ दृश्य दिखाया गया है ।

के बगल में एक चेयर रखा हुआ है।

और उनके बगल में ही एक आदमी भी खड़ा हुआ है।

इस बिल्डिंग के पोस्टर पर भारतीय डाक लिखा हुआ है।

और रूम पे कुछ लाइट लगे हुए हैं।

उनपे विभिन्न प्रकार का वस्तु रखा हुआ है।

जिनको बांस के घेरा देके बंद किया गया है और गाय के बगल में एक गमला रखा है।

और यहां पे इंसान भी खड़ा है।

ये बाहर एक आदमी भी है।

ट्रक के सामने भी एक बाल्टी रखा हुआ है।